उपर हमें एक रोड दिखाई दे रही है जिसपर हमे एक ई रिक्शा दिखाई दे रही है जो की ब्लू कलर की है ।

बाइक भी दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर साइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है और दो लोग एक बाइक पर बैठे हुए और खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक हमें बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें छोटी-छोटी डोवा उगती दिखाई दे रही है।

पर हमें जंगल जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें पहाड़ दिख रहे है।